यहाँ पे मुझे दिख रहे है ये लग रहा है मॉर्निंग का बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ पर छत में भी है।

बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये एक मदर डायरी का दिख रहा है यहाँ है और पीला कलर का है यहाँ पर ऊपर डेकोरेट किया है बहुत --